यहाँ पर एक घर है घर के नीचे कुछ दुकान है यहाँ पर एक ए _टी_एम का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे दुकान का दरवाजा बंद है यहां पे नीचे कुछ सिडिया भी है।

यहाँ पर एक ए.टी.एम. है उसके ऊपर उसका बड़ा सा बोर्ड है उसका दरवाज़ा शीशे का है और दरवाज़ा टुटा हुआ है दरवाज़े के अन्दर एक बड़ा सा डस्टबिन रखा है।

यहाँ पर एक पार्लर है पार्लर के दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं पार्लर के गेटें स्टील की है और उसपे भी पोस्टर लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक बड़ी सी नाव है नाव लाल रंग मे है नाव के नीचे बहुत सारी मिट्टी है यहाँ पर मिट्टी के ऊपर कुछ चट भी रखे गए है।